इस फोटो में कमरा दिखाया गया है जोकि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है विथ व्हाइट लाइटिंग और बहोत ही बढ़िया दिखाई दे रहा --

खिड़की बनी है जोकि व्हाइट है जोकि एक बहोत बढ़िया कलर कंट्रास्ट बना रही है इस कमरे के साथ में।

क्योंकि किसी खास पेशेंट के लिए ये काम मिलने दिया जाता होगा उसके साइड में डस्टबिन लगा रखा है और एक चढ़ने के लिए --

वहां पे नंबर्स और ए बी सी डी और लिखाई हुई दिखाई दे रही है जो की ये हो सकता है किसी प्रिंटिंग की मशीन है।

कुर्सियों में लकड़ी का यूस किया गया है।

और जो खिड़कियां हैं वो भी उसी कलर की है और जोकि बेड के पास में लगी है लोहे की खिड़कियां हैं जो दरवाजा है वो लकड़ी का दिखाई दे रहा है जोकि कारपेंटर द्वारा बनाया गया होगा।

रंगीन लाइटें लगाई गई है और आगे एक पोस्टर लगाया गया है और एक मंदिर भी है जो कि पीछे हमें दिखाई दे रहा है।

और देख पा रहे हैं कि टेंपो का कलर भूरा कलर का है और पर्दे का कलर है जो कि फूल ये वो भी भूरे कलर के हैं।

इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक आदमी है जोकि साइकिल से जा रहा है एक और दो तीन औरतें हैं जोकि पैदल आ रही है सामने एक बैंक दिख रहा है जिसका नाम एस_बी_आई --

इस पिक्चर में हम देख पा रहे है की बहोत सारी कार्टून एक साथ रखे हुएं है जो की हो सकता है ये किसी फैक्ट्री में मैन्यूफैक्चरिंग किये गए हों।

लोहे के सिरे कटे हुए रखे हैं और श्री कृष्णा कुछ नाम से इसके पैकेजिंग है सामने एक सी_सी_टी_वी लगाया गया है जिससे ये पता चल जाता है कि किसी फैक्ट्री का ही चित्र है।

कट के लग रहे हैं अपने जीवन लक्ष्य को ध्यान में रखो इसका मतलब यह है की ये लाइब्रेरी है।

जोकि इन बच्चों को मोटिवेशन के लिए केचारा छाप दिया है बस और कुर्सियां लगाई गई हैं क्योंकि खुशियों पे --

पिक्चर को देखकर लग रहा है कि ये किसी भंडारे का हो सकता है या फिर ऐसी कथा और का हो सकता है जिसमें की देख पा रहे हैं की बहोत सारी भीड़ --

और एक प्रिंटर रखा हुआ है और दो सामने कुर्सियां हैं जो कि यह दर्शाता है कि ये ई मित्र का चित्र हो सकता है फिर भी ये किसी सरकारी कार्यालय भी हो सकता है जो कि --

इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि दो दोस्त है जो कि झरने के नीचे अच्छे से नहा रहे हैं मजे कर रहे हैं एक दोस्त है जो कि नीचे खड़ा हुआ है।

और एक दो स्टॉकी शो के वीडियो बना रहा है कुल मिलके यहां पे चार लोग है जोकि एंजॉय करने आए होंगे ट्रैवल करने पर यहां पे हम देख पा रहे हैं ये पानी का कलर हरे कलर का है जोकि --

और स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कहा गया है पर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कि मोबाइल चला रहा है जो की फर्स्ट बेंच पे बैठा है।

इस फोटो को देख के लगता है कि एक श यूनिवर्सिटी या फिर किसी बड़े कार्यालय का चित्र है जिसमें कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे बहुत ज्यादा बड़ी बिल्डिंग है।

इस जगह पे हम देख पा रहे हैं कि ये किसी पार्क का चित्र हो सकता है जो की लग ही रहा है कि पार्क ही है क्योंकि यहां पे एक बोर्ड लगाया गया।

जो की हम देख ही पा रहें हैं ये भी हालांकी में भी गिला हो रखा है यहां पे हाथी भी है चितर कोई दिखाई दे रहा है जो की बी गिला हो रखा है।

नाइट का व्यू है पीछे देख पा रही हैं आकाश में ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है और जो लाइटें लगी हुई है वो नीले कलर की हैं।